इसमें कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

ये पिक्चर एक हाई स्कूल की है जिसका नाम कारमल हाई स्कूल है।

ये पिक्चर एक जिम की है।

इसमें काफी सारे एक्सरसाइजिंग टूल्स लगे हुए हैं।

नीचे की साइड वुडन टाईस है।

इसके दीवार का कलर वाइट है।

ऊपर काफी सारी लाइट्स चल रही हैं।

इसमें एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

यह पिक्चर रात में ली गई है।

और इसमें एक पौधा भी लगा हुआ है।

ये पिक्चर एक कंस्ट्रक्शन हाउस का है।

पीछे कुछ घर भी दिख रहे हैं।

और एक पेर भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में एक पुल दिख रहा है।

इसमें काफी सारे पेड़-पौधे भी हैं।

ये पिक्चर एक मैरिज हॉल का है।

इस पिक्चर में एक पार्क दिख रहा है।

इस पिक्चर में काफी सारे गमले दिख रहे है।

इसमें कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।

और छत पे ब्लैक कलर की ग्रिल लगी हुई है।

नीचे की साइड वुडन टाइट लगी हुई है।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

इसमें काफी बड़े-बड़े मिरर भी लगे हुए हैं।

इसका नाम भारतीय पेट्रोल है।

इसमें कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिख रहे हैं।

जिसका नाम डाउन टाउन कैफे है।

और यह कैफेतो माला है।

इसमें एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर भी लगा हुआ है।

नीचे वाइट कलर की टाइस दिख रही है।

ऊपर लाइन से काफी सारी लाइट जल रही है।

और इसकी दीवार वाइट कलर की है।

ये पिक्चर एक डार्क घर की है।

जिसका कलर रेड और वाइट है।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

इसमें काफी सारे नाव भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ मशीन भी नजर आ रही है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

इसमें काफी सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

नीचे की साइड वाइट कलर के टाइज हैं।

ऊपर काफी सारी लाइट जल रही है।

इसमें काफी सारी खिड़कियां दिख रही है।

इसमें कुछ पंखे भी नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में एक काफी बड़ा मंदिर दिख रहा है।

जिसका गेट काफी सुंदर है।

इसमें काफी बड़ी-बड़ी सीढ़ियां लगी हुई हैं।

ये पिक्चर एक जिम का है।

इसमें एक काफी बड़ा मिरर लगा हुआ है।

नीचे की साइड वुडेन टाइल्स भी है।

और भी कुछ एक्सरसाइजिंग टूल्स दिख रहे हैं।

इसमें कुछ खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।